बहुत सारे टीचर्स योगा कर रहे हैं।

और यहां पे खेती गार्डन सारे चीज अलेबल है यहां पे --

ये एक सब्जी मंडी है यहां पे--

ये एक जंगली एरिया है।

और यहां पंखे लगे हैं।

यहां पे स्पीच हो रही है।

पेन लेने या कॉपी लेने को आए हैं।

रायपुर छत्तीसगढ़ स्टेशन दिखाइ देता है बहोत ही बड़ा और सुंदर स्टेश--

एक स्कूल है यहां--

और साथ में एक फ्लावर भी है।

बहोत बड़े बड़े बॉक्सेस है इस डांस क्लास में डांस --

एक बहोत बड़ा मॉल --

और तरह तरह के सब्जियां हमें दिखाई देती हैं बहोत ही सुंदर सब्जियां।